यह एक बहुत ऊँची बिल्डिंग बनाई गई हैं जिसके नीचे एक युरोपो का नामक बोर्ड लगाया गया हैं।

इसके आस-पास काफी छोटे-बड़े सभी प्रकार के पेड़ मौजूद हैं जो इसे और भी आकर्षक बनाते हैं यह प्लेन अपनी यात्रा के लिए--

यहा पर यात्रियों के लिए एक प्रतीक्षालय भी बनाया गया है।

यह एक बोहोत बड़ा हॉस्पिटल बनवाया गया है।

इस लायब्रे को काफी सुन्दर तरीके से सजाया तथा बनाया गया है--

यह एक क्लीनीकर्स की दुकान है जिसका नाम गंभीर

तोड़ोगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नयीं गज्जब।